यहां पर मुझे एक घांस की चारा दिखाई दे रहा है हरे कलर का।

यहां पर मुझे हरे कलर के कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे एक बस नीली ओर वाइट कलर की दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक हरे कलर के पेड़ कुछ दिखाई दे रहे हैं।

तालाब टाइप का छोटा सा दिखाई दे रहा है जिसमें पानिया है।

यहां पर मुझे पीले कलर की दीवार दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे पीले कलर की टाइल लगी हुई दिखाई दे रही है।

व्हाइट ऑरेंज हरा नीला दिख रहा हैं यहां मुझे कुछ कुर्सियां दिख रही हैं।

यहां मुझे एक टेबल धरी हुई दिखाई दे रही है।

यहां मुझे एक डंफर खड़ा हुआ दिख रहा है यहां मुझे एक छोटा सा घर दिख रहा है दूर में।